जिसके सबसे ऊपर ऊपर की चोटी में एक --

जहां कई रंग-बिरंगे पेंट से पेंट किया गया है।

और इसके छत पे गोलाकर गुम्बद जैसा बना है जिसमें एक बहुत ही बड़ा सा घड़ी है और इसके उपर एक --

एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पर एक व्यक्ति इन मशीनों को कपड़े से --

यह इमेज एक शहर का है जिसके बीचों बीच एक --

नदी गुजरती हुई दिखाई दे रही है इसके ऊपर एक --

इसके सामने दान पत्र है और इसके नीचे लिखा हुआ है की नमो बुद्धा जय भीम जय भारत।

जो इसके बगल अगल-बगल काफी बड़ा जंगल --

ओर यहां पर काफी सारे।

यहाँ के सारे जलकुंभी इस तालाब में है जो यह तालाब को हरा रंग खे --

अ इसके छप्पर को एलवेस्टर लगाए गए हैं | इनके दिवारो में एक --

जो काफी ही बड़ा है इसके चारों तरफ दीवाल से गहरा गया है।

एक और मकबरा सा मकान बना रहा है जिसके अभी पेंट करने के लिए बांस से --

जंदा दंता पे एक बोरा लगाया गया है।

जिसके दीवारों पर तरह-तरह के पैटर्न बने हुए है एक बहुत ही बड़ा सा मंदिर है और दो छोटे-छोटे मंदिर है।

यह इमेज एक पार्क का है जहाँ कहीं छोटे-छोटे बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

जिसमे बैठने के लिए चेयर भी है यह काफी ही सुन्दर लग रहा है देखने --

इसमें जो छतरी है रंग-बिरंगी की ये काफी सुंदर --

यह इमेज एक योग दिवस का है।

जिसमें एक लड़की हाथ में कुछ फुवारा रखे हुए हैं जो लाल रंग के धुएं की तरह दिखाई दे रहा है उससे निकल रहा है।

जिनके छात्र यहाँ पर सरस्वती जी के दिवस पर यहाँ स्टेज पर डांस कर रहे हैं।

यहां बहुत सारे लोग यहां एक्सरसाइज करने के लिए आए हुए हैं।

इस पठान में बड़े छोटे वृक्ष है।